इस लड़कियों को देखिए रंगोली सजा रही हैं। स्कूल में अपने और रंगोली सजाने के बाद देखिएगा कितने कलर्स हैं जैसे की हरा लाल सफेद --

बहोत (बोहोत) से लोग देख रहे है| इनको देखने से लगता है कि स्कूल मे कुछ प्रोग्राम होना है इसीलिए ये लोग रंगोली सजा रहे है।

इन लोगों को देखिए किस तरह बोरे वगैरह लिए जा रहे हैं मजदूर लोग है जो की --

ये लड़कियों को देखिए क्या बना दिया हैं ऐसा जो थाड़े हो-होकर देख रही है और--